यहा पर एक बच्चा है जो अंदर झाक रहा है रोले की लोहे की जो जाली बनी है उसके अंदर और उसके अंदर खरगोश है और कुछ रखे हुए है।

यहां पे बहुत सारा पानी रखा हुआ है बह रहा है नदी का पानी और उसमे कुछ कुछ चिड़िया नज़र आ रही है और इधर बगल में घास लगे हुए है।

वहां पे एक हिरण खड़ा हुआ है और पेड़ लग रखे हैं छोटे छोटे से घास नज़र आ रहे हैं।

यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है।

और इसका जो कलर है वो उतर चुका है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ से नज़र आ रहे है छोटे पौधे नज़र आ रहे है और घास दिखाई दे रहा है।

कूकू फन ज़ोन लिखा हुआ है लॉर्ड्स लिखा हुआ है खम्बे है और पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं मैदान है जिसमें घास लगी हुई है।

पानी के अंदर और एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसे बहुत सुन्दर तरीके पेंट किया गया है कलरफुल और डस्टबिन वगेरा भी रखी हुई है।

यहाँ पे एक बड़ा सा खेत जैसा --

और वहां पे दान पेटी एक थाली और बगल में कुछ रखा हुआ और पीछे बहुत सारे पेड नजर आ रहे हैं हमें।

हमें यहाँ पर ट्रेन की जो है खिड़की दिखाई दे रही खिड़की से फोटो खिचते हुए नज़र आ रहा है।